ऐसी लगी है। टेबल रखी हुई हैं। खिड़कियां लगी हुई हैं। कांच के शीशे लगे हुऐ हैं।

इस पिक्चर में हमें बहोत बड़ा समुंद्र दिखाई दे रहा है। तालाब दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में हमें।

और पुरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और कमरे दिखाई दे रहे है पूरा खुला --

गार्डन है पूरा गार्डन जैसा दिखाई दे रहा है।

रिबन दिखाई दे रहे है और --

और किले में कोई दिखाई भी नहीं दे रह --

और यहाँ पर सीढियाँ दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर पत्थर भी पड़े हैंमिट्टियाँ हैं।

बहोत ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं। बोर्ड है बहोत बड़े-बड़े।

रस्सिया दिखाई दे रही है पूरे में नीचे फर्श दिखाई दे रहा है।